डिज़ाइन में बनाया दिख रहा है और बहोत सारे पेड़ पौधे लगे दिख रहे है।

यह टंगा हुआ दिख रहा है | साइड में कंडक्टर जैसा खड़ा दिख रहा है | बसो के ऊपर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है | कुछ महिलाएं दिख रही हैं। उनके हाथ में थैली दिख रही है। कुछ लड़कियां दिख रही है। उनके बैग दिख रहे हैं।

कुछ जो खिलौने हैं उनका का कलर पीला दिख रहा है कुछ पेर पत्तियां भी झूल रहे है तो कुछ खिलौने के पास खड़े दिख रहे हे ।

बिल्डिंग का फ़ोटो दिखाई दे रहा है। जिसके हमें सामने की साइड खिड़कियां कांच दिखाई दे रही हैं। सामने के साइड पे कुछ गिलीरियाँ दिखाई दे रही हैं। जिसके अंदर लोहे के एंगल लगे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर की साइड जाली व --

किसी गार्डन का ग्राउंड का फोटो दिखाई दे रहा जिसके यहाँ पानी जमा दिखाई दे रहा है इसके आसपास बोहत सारी बिल्डिंगो में दिखाई दे रही है जिसकी गलेरिया और खिड़की दिखाई दे रही है।

साइड में कुछ खम्भे दिखाई दे रहे है जिससे वायरिंग जाती हुई दिखाई दे रही है सा ऊपर उनके साइड में कुछ टावर बने दिखाई दे रहे है और पानी के पीछे एक बड़ा सा पेड़ बना दिख रहा है उसके आइड साइड छोटे पेड़ पौधे लगे हुए दिख रहे है ग्राउंड में कुछ कचरा पड़ा हुआ--